नदी में कुछ बोट दिखाई दे रही है कुछ लोग बोट चला रहे हैं | नदी की किनारे में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रही है।

आस पास कुछ पेड़ दिखाई दे रही है कुछ लैम्पपोस्ट दिखाई दे रही है और आसमान में सुर्जो भी दिखाई दे रही है।